और मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय फौज --

करीबन सामने की तरफ आठ से दस लोग हैं मोटी सी किताब लेकर कुछ पढ़ रहे --

मुझे लगता है ये पच्चीस दिसम्बर की इस शाम की तस्वीर है और यहाँ पे बहुत भीड़ है।

बिशेष कार्यक्रम का यह तस्वीर है।

जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में इस तस्वीर में आप देखेंगे तो ये किसी अ --

जैसा कि आप देख पा रहे है इस तस्वीर में आप देखेगे तो ये किसी की शादी या किसी विशेष कर्यक्रम के दिन --

कोरिअर रिज़ रिज़र्व टिकट कराने के लिए --

जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ओरियन मॉल है जो गोरखपुर में स्थित है गोरखपुर के मोहद्दीपुर में स्थित है।

और अपना मछली मारने का कुछ समान लिये हुए --

बहुत फोटो वे दूर से लिया गया है।

सामने देख कई हजार लोग उसने छोटे से घर में रहते होंगे।

अभी नया नया मकान बन रहा है। उसके ऊपर ये खड़ा हुआ है।

यह बिहार में हो सकती हैं।

और साइड साइड में हो सकता है ध्वनि की चेले की तस्वीर होगी।

एन्जॉय कर सकें शुद्ध वातावरण होता है।

घर में पैक रहने से शुद्ध हवा भी नहीं मिलती ऑक्सीजन भी नहीं मिलतते।